प्रिंस सम्राट बैंड का रिसेप्शन है यहाँ पर बैंड हायर किया जाता है और यह देखिए रिसेप्शन पर कोई एक पेपर रखा है।